रोजे के पास घर हैं बहोत अच्छे-अच्छे बहोत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ।

ये स्कूल है बहुत बड़ा ग्राउंड है। स्कूल के पीछे का वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। दो लड़के खड़े हुए हैं एक स्कूटी है। आसमान दिख रहा है।